ओ माई गॉड कितना अच्छा फूल है देखिये न तोड़ने के लिए आदमी लगे हुए यहाँ पे फूल कितना सुन्दर लग रहा यहाँ पे की --